फोटो में एक घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर एक काली भैंस खड़ी हुई है जिसके साथ में एक महिला और एक लड़का खड़ा हुआ है जिस लड़के ने काले कलर का कैप लगाया हुआ है सिर में।

सामने एक भीम यू _पी _आई का स्केनर रखा हुवा है यहाँ पे एक रेफरिजेटर भी दिखाई दे रहा है जिस रेफरिजेटर मे बोहोत सारी कॉलडरींग की बोटल नजर आ रही है।